जिसमे मूर्तिय मूरति जैसे पत्थरों से ऐ दिखाई बनी दिखाई दे रही है।

लम्बी जैसी सामने में एक घेरा जैसा बना हुआ है।

और पजामा भी लाल रंग की कुर्ती पहनी हुई पीछे फ्राक हैंग की हुई है।

और भी मशीन दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार दिखाई दे रही है।

हाथों में मिट्टी लिए हुए उस- उसपे डालते हुए दिख रहा है।

और कुछ लोग स्टेज पर भी खड़े है। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हुए सीढ़ियों पर दिखाई दे रहे है।

और पेड़ वगैरा भी दिखाई दे रही है।

फ़ोन लेके अपनी सेल्फी ले रहा है।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

आ फूल डिज़ाइन बनी हुई है। सामने में एक खिड़की भी है जालीदार।

अंदर में कुछ चेयरे वगेरा रकी हुई है। शीशे की गेट भी लगी हुवी है।

और चेयरें वगैरा खाली दिखाई दे रही है ।